बहुत सारे अल औरत और मरद लोग खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में जीवन क्लिनिक का बोड दिख रहा है।

इस तस्वीर में मिट्टी के बर्तनों की दुकान दिख रही है।

एक आदमी मिट्टी के बर्तन पे रंगाई कर रहा है।

इस तस्वीर में घर के बाहर छोटे से गार्डन का नजारा दिखाया गया है।

इस मैदान पे नीले कलर का मैट बिछा हुआ है। नीचे--

इस तस्वीर में ढाबे का नजारा दिखाया गया है।

बीच में टेबल कुर्सी रखी हुई है और डस्टबिन भी रखा हुआ है।

बीच में प्लट रखी हुई हैं और ऊपर की तरफ बाल्टी जैसा रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहोत ही बड़ा झील दिख रहा है।

ते बहुत सारे छोटे-छोटे पत्थर दिख रहे हैं।

तस्वीर में ग इंडियन गैस की एजेंसी दिख रही है।

ऊपर आसमान दिख रहा है और लोहे की सरियें दिख रहे हैं।

और बहोत सारे लोग कंप्यूटर चला रहे हैं।

ऊपर बहोत सारे बच्चे कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यहां पर आगे की तरफ बहोत सारे ऊन रखे हुए हैं।

औरत मशीन में कुछ कर रही है और वहां बहोत सारे सामान दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में होटल के अंदर का नजारा दिखाया गया है।

इस तस्वीर में चाय सुट्टा बार की तस्वीर दिख रही है।

पेड़ लगा हुआ है उसके ऊपर लाइटें लगी हुई है।

इस तस्वीर में बहोत ही बड़े शहर का नजारा दिखाया गया है --

इस तस्वीर में दवाई की दुकान दिख रही है आ--